यहाँ पर आदमी लोग खड़े हैं जिसमें एक ने नीले रंग की शर्ट पहनी हुई है।

यहां पर एक दुकान है जहां पर बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं और यहां पे दीवारों के ऊपर बहोत सारी खिड़कियां है।

नीले रंग का शर्ट पहनकर एक आदमी भी दिख रहा है और बहुत सारी आदमी लोग यहाँ प बैठी--

और बहोत सारा लिखे हुए छोटे छोटे बोर्ड दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर बड़ी बड़ी की मूर्ति दिखाई दे रहे हैं बीच में एक टी_वी है बाजू में दो--

का रंग लाल है उसके ऊपर एक सफेद रंग का शर्ट पहनकर हाथ में बैठा हुआ है।

वह है जिसमें सब्जी रखी हुई है यहां पे एक सफेद रंग का शर्ट पहनकर आदमी खड़ा है।

यहाँ पर एक पीले रंग की बड़ी सी बिल्डिंग है जिसको कांच की खिड़कियां दिखाई दे रही है आसमान दिखाई दे रहा है।

रूम को फूलों से सजाया गया है काले रंग के परदे भी हैं लाल रंग का नीचे कपड़ा डाला हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर काले रंग की जादू की है आसमान दिखाई दे रहा है बाजू में भी पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर फूलों से सजाया हुआ बगीचा दिखाई दे रहा है जहाँ पर गुलाबी सफेद--

रंग के फूल है और यहाँ पे मिट्टी दिखाई दे रही है बीच में बड़ा सा पेड़ है पीछे एक नीले रंग--